यह एक मंदिर का दृश्य है जिसके कलर व्हाइट और लाल है।

तथा एक बीच में ड्राम भी रखा हुआ है और यहां बहुत सारे आदमी पूजा करने के लिए आए हुए हैं।

बहुत सारे पीछे में पोल लगे हुए हैं जिसके द्वारा लाइन पास किया गया है।

और यहां पे दो नारियल भी रखा हुआ है।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

यह एक फंक्शन पार्टिसिपेंट का दृश्य है जिसके बाहर बहुत सारे आदमी खड़े हैं।

यह एक रोड का दृश्य है जहां पे एक मैदान टाइप का दिख रहा है।

और एक पत्थर द्वारा पिलर भी बनाया गया है और बादल मंडरा रहे हैं तथा रोड पक्की का--

यह एक कपड़ा दुकान का दृश्य है जिसके बाहर टिमटिमाते हुए बल्ब का बहुत सारा झालर लगाया गया है।

और तीन बाइक भी लगाई गई है तथा कुछ आदमी भी दिख रहे हैं।

और एक बहुत बड़ा सीसा भी लगाया गया है और उसके बाहर बहुत सारे गाड़ियां भी खड़ी हैं।

तथा एक खिड़की भी है जिसके बाहर पर्दे लगाए गए हैं।

और एक अपार्टमेंट भी है तथा जिसके दीवार पे तीन फूल लटकाए गए हैं।

और वो लेक्चर सुन रहे है और यहां पे बहुत सारे कुर्सियां भी लगी हुई है।

तथा फुटबॉल बैडमिंटन भी रखी गई है और शूज भी दिख रही है।

तथा स्पोर्ट शू स्पोर्ट टी शर्ट भी दिख रही है।

अन्यथा कैमरा भी लगाया हुआ है और पंखे भी लगाए गए हैं जो ब्लैक कलर के हैं।

जो ब्लू कलर का है और व्हाइट बल्ब भी लगाया गया है।